जो फूल हैं वो बहुत सारे --

और नीचे के साइड पे कुछ गेट लगे हुए हैं जो खुले हुए हैं ।

नीचे जो टेबल हैं। वो लकड़ी की कलर की दिखाई दे रही हैं। परांठे पे कुछ हल्की-हल्की सी कलर्स काली डिजाईन्स हैं ।

यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर और नीचे जो हैं वो हरे कलर कारपेट है।

और पीछे सारे भी काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं। एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है।

उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। नीचे काफ़ी सारे वाइट मकान दिखाई दे रहे हैं और उपर नीला आसमान नजर आ रहा है।

कटोरी और प्लेट रखी हुई हैं। पीछे कुछ बाल्टियाँ रखी हुई हैं कैरट में।

यहाँ पे कुछ मशीने हैं जो मशीने यहाँ पे खुली हुई रखी हुई हैं और उन पे वील लगी हुई हैं यानि की गोल पहिएं हैं ।